लाइट लगी हुई है बोर्ड लगे हुए है और गेट दिखाई दे रहे है कुर्सी रखी हुई है।

बिल्डिंग के ऊपर कुछ लिखा हुआ है बड़ा सा ग्राउन्ड है ग्राउन्ड में हरी घास है और हरी हरी पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

सामने एक मल्टी बिल्डिंग दिखाई दे रही है अम्म जिसमें गुलाबी रंग पुता हुआ है अम्म बहोत से खंभे दिखाई दे रहे हैं।

और उम्म बड़े पेड़ दिखाई दे रहें हैं।